उधर एक आदमी भी चेयर में बैठा हुआ है।

जे पूरा रेड कलर टाइल्स लगाया हुआ है।

व्हाइट कंबल भी बिछाया हुआ है ।

इस चित्र में मुझे यहां पर एक रेड कार दिख रहा है उधर एक स्कॉर्पियो भी दिख रहा है और भी गाड़ियां दिख रही है।

कुछ समान बॉक्स में रखे हुवे है कुछ सामना ऐसे ही रखे हुवे हैं।

ये किसी दुकान का चित्र है और यहां पर बोर्ड लगा लिखा हुआ है ड्राइ क्लीनर ।

गमला में पौधा भी लगाया हुआ है।

ग्राउंड के किनारे में बड़ी बड़ी इमरते भी दिखाई दे रही है।

स्वास्तिक भी बनाया हुआ है और उसके बगल में भी एक शटर लगाया हुआ है।

भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा रेस्टोरेंट का चित्र है और रेस्टोरेंट काफी बड़ा है।

यहां पे ज्यादातर लाइट बल्ब वाला समान दिख रहा है।

और यहां पर पूरा बेड भी लगा हुआ है बेड में बहुत सारा कपड़ा पूरा छीतर- बितर के रखा हुआ है।

फुल फुल हाथ का टी शर्ट एंड जींस भी पहना हुआ है।

महिला ने ऊपर से ब्लू कलर का जैकेट पहना हुआ है और साड़ी भी पहनी हुई है।

यह प्ले चर का चित्र है यहां पर यह एक लड़का और एक लड़की है लड़की बैठी हुई है उधर बोर्ड भी लगा हुआ है।

बड़ा सा समुन्द्र है और वहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे और झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ये ब्लू नांव है पूरा साइड में।

एक बड़ा सा टी_वी भी लगाया हुआ है।

सामने दुर्गा मां का फोटो भी टंगा हुआ है।

झालर वाला लाइट भी लगाया हुआ है यहां पर चेयर में ये आदमी बैठा हुआ है।

इस चित्र में ये मुझे कार पार्किंग करने का जगह दिखाई दे रहा है जो की बहुत बड़ा हाल है यहां बहुत तरह तरह की गाड़ियां है।

दुकान के अंदर पूरा टाइल्स भी लगाया हुआ है और काफी सारा सामान भी रखा हुआ है।